और ग्रे कलर का पेंट और चप्पल पहने है दूसरे आदमी ने वाइट कलर की शर्ट लोअर --

पण्डितजी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं।

ये एक जिम की तस्वीर है जहाँ पर ग्रीन कलर में ये --

आदमी खड़ा हुआ है जो की वाइट शर्ट और ब्लू जीन्स में खड़ा हुआ है | बैग भी --

बहुत दूर-दूर तक व्यू जा रहा है मौसम बहुत साफ है।

इसके आस-पास बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं जो की शानदार लग रहे --

यहाँ पर एक गाड़ी है जो की पेंट की जा रही है ग्रे कलर से |

खा रही हैं और उधर एक और टीचर हैं जो की राइट साइड के बच्चो को सीखा रही हैं।

आदमी खड़ा हुआ है सामने बहुत सारे वाहन आते-जाते नज़र आ रहे हैं लेफ्ट साइड में ये कुछ --

काफ़ी बढ़िया एंट्रेंस दी गई है | सामने पार्किंग भी दी गई है।